पत्तियाँ दिख रही है और घास दिख रही है छोटी छोटी बड़ी बड़ी।

ऊपर जो है सफ़ेद-सफ़ेद जो है आसमान दिख रहा है बादल दिख रहे है और साइड में जो है एक पेड़ दिख रहा है।